ए कितना बढिया टी.वी. देखिये।

बच्चो के बैठने के लिए मेज स्टूल भी हैं।

इस मकान की खूबसूरती देखिये।